जिसमे चार चेस्ट स्ट्रम्बल मशीन रखी हुई हैं ।

और फ़र्श का कलर कला और ग्रीन है।

जिसपे एक चिल्ड्रेन बुक्स का बैनर लगा हुआ है।

और फर्श का कलर सफेद है।

यह सैलून के अंदर का तस्वीर है।

यह सैलून के अंदर का तस्वीर है।

टायर के व्हील का कलर ब्लैक और व्हील स्कोप का कलर सिल्वर है ।

जो स्टील से बना हुआ है।

ब्रिज की शुरुवाती दीवार सफेद रंग की है ।